एक व्हाइट एक क्रीम और पीछे बदल है बोत ज्यादा है एसा लग रहा है पानी ही गिरने वाला है थोड़ी देर मे नीचे एक रोड दिखाई दे रही है एक तरफ ग्रीन कलर के पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर भी रिंग से निकलने के लिए इस तरफ बद्दल दिखाई दे रहे है हल्की सी धूप भी दिखाई दे रही है इसका पानी ब्लू सा नजर आ रहा है और उ उनके रिंग्स के अंदर --